बाहर में जो स्कूटी बाइक ये सब जो पार्क करके हैं।

बिल्डिंग है उसको जो वाइट पेंट करके हैं।

ये फोटो में जो हमको जो एक चर्च जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां में टेबल है और टेबल का चारों तरफ जो चेयर है जो कि ग्रीन कलर का है और दरवाजा दिखाई दे रहा है।

सजा समान सब रखे हैं एक कपड़े--

में जो सुंदर से पहार दिख रहे हैं।

ऊपर मैं आसमान दिखाई दे रहे है।

ऊपर में जो टॉवर वही भी दिख रहे--

फोटो जो हमको जो उपर मे फ्लैग दिखाई दे रहा है जो की ब्लू रेड येलो ये सब कलर का है।

उपर में आसमान दिखाई दे रहा--

साइड में जो बहुत बड़ा बड़ा पेड़ आगे है।

पीछे में ऑरेंज कलर का कपड़ा सब पहन के साधु लोग हैं।

इस फोटो में झूम का एक रूम दिखाई दे रहा है।

जो पर्दा है उसका कलर भी पर्पल है।

सामने में एक बेड है उसका ऊपर बैंकेट पिलो ये सब है।

लोग जो सब्जी बेच के दिखाई दे रहा हैं।

सामने में एक साइन बोर्ड है और पहाड़ दिख रहा--

ये फोटो में घर दिखाई दे रहे--

यह फोटो में जो हमको जो एक बक्सा दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में ग्लास लगा के है और ये जो बक्सा है उसमें दो ताला मारके हैं।

और गोल्डन कलर का एक मूर्ति है।